ओर वो लोग एक गार्डन पे बैठे हैं जहां पे बहोत सारा ग्रास उगा हुआ है।

मोबाइल नंबर दो दिया हुआ है और आई_डी भी दिया हुआ है और डिस्प्ले के आगे क्या क्या आइटम --

और तीन लोग जो है वो लोग खा रहे हैं पिज़्ज़ा खा रहे हैं वो लोग चेयर पे बैठे हुए हैं रेड कलर का टेबल है।

और सबका राइट पैर जो हैं जो हैं वो ऊपर ही हैं और दो लोग मैट के ऊपर हैं पिंक कलर का।

ये एक साउथ का डांस प्रोग्राम दिखाई दे रहा है।

और बीच में एक लड़का खड़ा है झंडा लेके येलो और रेड कलर का।

और ये लोग स्टेज के ऊपर बैठे हुए है तो स्टेज के ऊपर --

ये एक मैरिज दिखाई दे रहा है जो दूल्हा जो है वो कुछ लड़की को बांध रहा--

और ऊपर जो है डेकोरेशन चैक्स का है व्हाइट और रेड का और वो अंब्रेला जैसे दिखया --

और जो प्राइस ले रहे है ऐसा दिखाई दे रहा है छोटी लड़की जो है पर्पल कपड़े पहन के वो ले रही है।

और जो साड़ी पहनी हुई है शायद वो टीचर से तो उसके हाथ से वो ले रही है।

और रैक है बहुत सारे उसके ऊप अंदर बुक्स रखे हुए हैं और एक --

और बहोत लोग स्टैंड पर बैठे हुए हैं अपना अपना लगेज ले के --

ये एक मेल पीकॉक हैं जिसने पूरा फैदर ओपन किया हुआ हैं।

यह दृश्य बहोत अच्छा लग रहा है और वह नीचे फ्लोर पर खड़ा हुआ है।

लोवर जो है ओ व्हाइट कलर का टाइल्स है यहां पे ब्ल्यू कलर का को कपड़ा दिखाई दे रहा है।

जो रेड कलर का पहनी है वो पिंक कलर की लड़की को सीख रही कि ऐसे करना है।

यहां पे एक अंकल जो है सेल्फी ले रहे हैं जिसका फेस दिखाई दे नहीं दे रहा है उसका एक कान दिखाई दे --

और यहां पे साइड में ऊपर लिखा हुआ है कुछ अ तीन लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है।

और आजू बाजू में स्कूटी भी खड़ी है और सामने एक मैंट जैसा भी--

ये एक शॉप दिखाई दे रहा है और एक बैनर जैसा लगाया हुआ--

बहोत सारे क्रीम दिखाई दे रहे है अ ओरल केयर के बाथ एंड शॉवर के --

इन केयर के और बहुत सारे मटेरियल लगाया हुआ है।

आजू बाजू पूरा ऐसे स्लाइडिंग टाइप है और बहुत सारे पेड़ है और पीछे बहुत पहाड़ है दिखाई दे रहे--

सारे बॉटल्स लगाया हुआ ऊपर और एक विंडो है विंडो के उस तरफ जो है वो पेड़ दिखाई दे रहा --

जहां ये एक पत्थर बहोत बड़ा प पत्थर के ऊपर से आ रहा है।

और जो पानी जो है वो फॉरेस्ट से आ रहे है इसके लिए पूरा मिट्टी जैसे है ब्राउन कलर का पानी --

और जो पत्थर है उसके ऊपर से भी पेड़ है उसके ऊपर भी--

और ये पूरा ब्लू कलर और वाइट कलर के पतरे से बना हुआ दिखाई दे रहा है।

बनाते हैं वो वाला लगाया मशीन और अंदर बहुत सारे लोग--

यहां जो पत्र का बना हुआ है और बहोत सारे प्लांट किया हुआ है पेड़--

और एक बड़ा सा पेड़ भी है जो दिखाई आधा दिखाई दे रहा है।

और एक चेयर लगाया बाजू में एक स्टैंड स्टूल है दो चेयर है और बहोत एक चप्पल है और स्टैंड जैसा बन --

और लगाया हुआ है आ कोई कोई शैंपू क्रीम बहोत सारे लगाया हुआ है।

और एक काउंटर है जहां पे अ एक चेयर लगाया है टेबल है और एक लैपटॉप वगैरह है।

ये एक पटेल बेकरी है जहां पे प्योर वेज का लिखा हुआ है गेट पे --

और बहोत सारे चॉकलेट्स लगाया हुआ है साई बाजू में--

यहां पे एक सोफा लगाया हुआ है ब्राऊन कलर का और पीछे कपड़ा--

अं साइड में एक नीचे स्टैंड जैसे भी लगाया है साइड में कॉर्नर भी है।

अ ये जो बिल्डिंग का कलर है वो ऑरेंज और येलो कलर दिखाई दे रहा--

एक तरफ ग्रीन कलर का सोफा है और एक तरफ व्हाइट कलर के चेयर लगाया हुआ--

ये एक रोड दिखाई दे रहा है जहां पे बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं।

बहुत क्लीन है और एक और एक ग्रीन कलर डस्टबिन दिखाई दे रहा है।

जिसके ऊपर अह बहुत काम चालू है ऐसा दिखाई दे रहा है।

साइड में कुछ लगाया है प्रोटेक्शन के लिए वो।

और थोड़ा पानी भी दिखाई दे रहा है इधर उधर और बहुत सारा ग्रास दिखाई दे रहा है और एकदम--

और मोदी वगैरह फोटो जो लिया है वहां बाजू में फोटो डिस्प्ले हो रहा है।

और ऊपर अह पतरे का अह किया है शेड और साइड में फायर वाला भी--

और उसके पीछे एक बंगलों दिखाई दे रहा हैं और रस्ता जो हैं वो पूरा साफ साफ दिखाई दे रहा हैं क्लि--

और साइड में भी लिखा हुआ है और बहुत सारी लड़की लोग को डिस्प्ले किया हुआ है और ज्वेलरीज पहने हुए --

अंदर जो ज्वेलरीज है वो भी डिस्प्ले है गोल्डन के है एक चेयर दिखाई दे रहा है अंदर।

और ए_सी है यहां पे अं बहोत सारे और अं अ व्हीलचेयर भी दिखाई दे रहा है गेट है एक।

और व्हीलचेयर के इधर बहोत दो तीन लोग खड़े हैं और ऑक्सीजन प अ ओ गै--